ए बड़ा सा हॉल है हॉल में लाइट जल रही है। कई सारी लाइट लगी हुए हैं ऐ.सी लगी हुइ है और कुछ कुर्सिया है मेज है टेबल है और कई सारी चीजे --

बस स्टैंड है बस स्टैंड में कई बसे खड़ी हुई दिख रही है पानी भरा हुआ है कचरा है और ईटे का खरिनजा बिछा हुआ है। एक व्यक्ति का हल्का पैर एक लड़का आदमी का पैर दिख रहा है। थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ है।

ये एक बॉउंड्री है। बॉउंड्री के अन्दर बड़ा सा मस्जिद हैं। बैनर लगा हुआ है। लाइट लगी हुई हैं। बांस में तार बंधी हुई है। लाइट वाले खंबा लगा हुआ है।

स्टेशन है स्टेशन में पुलिस वाला खड़ा है एक आम आदमी खड़ा है पीछे हाथ किये हुए है कोई व्यक्ति मास्क लगाये हुए खड़ा है गाड़ी खड़ी है।

सामने प्लेटफार्म बना हुआ है ट्रैन लगा हुआ है।

नदी है। ये भरा हुआ कुछ पानी सा कुछ हरे भरे पोधे दिख रहे है।

संदेश अकाडमी है। यहाँ पे बाहर कई सारी बाइक खड़ी हुए हैं। संदेश अकादमी का बोर्ड लगा हुआ है।